ताकि ये और पढ़ाई करने में काफी सुविधा होती है यहाँ ये बच्चों के लिए ही है लड़के-लड़कियां यहाँ पर जाते हैं अपना पढ़ाई करने।

ये शर्मा आर.डी.ओ. है। ये डी.जे. है और यहाँ पर लगे हुए हैं ट्रोली पे लगा हुआ है हम लोग शादी में इसे बुकिंग करते हैं और और--